इस तस्वीर में एक लड़की चेयर पर बैठे बैठे कर फोटो कैमरा से खीचना चहा रही है। --

और आस पास में लोग आते जाते दिख रहे हैं।

सलोन का नाम बाल दाढ़ी सपा एंड सलोन के नाम से है जिसके बाहर एक आदमी खड़ा और इनका मोबाईल नंबर भी दिया है।